एक बहुत बड़ा गैरेज है उसमें वाइट कलर का बोल लगा हुआ है ब्लैक एंड वाइट का पूरा म्मम बना हुआ है पूरा पेंटिंग - उन्टिंग बहुत अच्छा के इसका मालिक भी म्मम महीने के करोड़ो कमा रहे हैं और फिर इसमें बै बाइक का --

और फेवी-गम इ सब भी है मेम लोग भी है उसके बगल में --

हाइट लाइटेड लाइट लगाए हुए हैं कई उसमे झार भी है बगल-बगल उसमे खेलने कूदने का व्यवस्था भी किया हुआ है लाल पीला ।